और इसमें एक फ्रिज है बड़ी वाली एक आइसक्रीम वाली फ्रिज है।

और एक लोग साइकिल से सब्जी लेके जा रहा--

और दो छोटे बच्चे हैं एक थोड़ी बड़ी है एक बड़ा लड़का है।

और पीछे से ग्रीन ग्रीन पेड़ भी --